यहां पर मुझे एक झरना दिखाई दे रहा है झरना बहुत ऊपर से--

और यहां पर पेड़ पौधे भी बहुत सारे हैं और जहां पर--

यहां पर मुझे बहोत सारे कपड़े की शॉप दिखाई दे रही है और यहां पे--

यहां पर मुझे एक तंबू दिखाई दे रहा है तंबू में एक--

यहां पर मुझे एक बड़ा सा घर दिख रहा है घर--

यहां पर मुझे एक घर दिख रहा है घर में कुछ लोग बैठे हुए हैं।

और घर का कलर व्हाइट लग रहा है और मुझे सिल्वर भी दिखाई दे रहा है यहां पर कुछ पंखे वगैरे भी--

वाइट येलो ग्रीन रेड --

यहां पर मुझे दुकान दिखाई दे रही है दुकान में बहुत सारा--

और जो ऑरेंज कलर का ही कुछ पाइप लग रहा है।

और यहां पर कुछ लगा हुआ है।

और यहां पर मुझे पिंक येलो कलर की लाइट दिखाई दे रही है लड़की ने वाइट कलर के जो थे वो ब्लैक कलर के--

और यहां पर बीच में कुछ सामान भी रखा हुआ है और यह लक लकड़ी--

यहां पर मुझे दो पैर दिखाई दे रहे हैं और मुझे यहां पर धुवासा छा छाया हुआ है।

और यहां पर पेड़ पौधे भी बहुत सारे हैं और ऊपर की साइड भी कुछ--

दीवाले उठ रही हैं नीचे की साइड भी कुछ दीवाल--

एक कुछ सब्जी रखी हुई है एक प्लेट में सलाद रखा हुआ है और सामने पानी का जग है।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

यहां पर मुझे एक हॉल दिख रहा है वो भी मुझे--

शर्ट है किसी ने वाइट कलर की शर्ट पहन रखी है और--

यहां पर मुझे एक रोड दिखाई दे रहा है और रोड पे एक थोड़ी सा कोना--

ऊपर से रेड कलर दिखाई दे रहा है और उधर पेड़ भी है पेड़ का कलर भी मुझे--

कुछ जंगल सा दिखाई दे रहा है छोटे छोटे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

और यहां एक टेबल और स्टूल रखा हुआ हैं। यह स्टूल व्हाईट कलर हैं।

सामने मुझे पेड़ पौधे दिखाई दे रहा है गमले दिख रहा है।

खिड़की दरवाजे दिख रहे हैं खिड़कियों में कांच दिख रहा है।

यहां पे कुछ मशीन भी रखी हुई है पीछे की साइड तो ये एक चेयर है चेयर को लंबा कर दिया गया है।

और उस फूल को चढ़ा रहा है फूल मुझे ऑरेंज --

यहां पर मुझे अंधेरा सा छाया हुआ है अंधेरे में मुझे--

चॉकलेट कलर का दिखाई दे रहा है अंधेरा लग रहा है तो कुछ समझ नहीं आ रहा है इसमें--